आसपास में बहुत सारे कचरे फैले हुए हैं।

अंदर में दो पुरुष खड़े हैं।

एक दो लोग झाड़ू मार रहे हैं।

एक दो झूलें लटकायें गये है।

एक बड़ा सा जंगल है।

मोटे पेड़ उगे हुए हैं।

हरी हरी घासे उगी हुई है।

एक छोटा सा पार्लर है।

फूलों से सजावट की गई हैं लाइट भी लगे हैं।

को लाइट भी लगाए गए हैं।

एक बड़ा सा जंगल है।

एक नए दुकान की ओपनिंग हुई है।

यहां पे शादी हो रहा है।

के अंदर एमोवा डेली स्कोर बोलिंग टूर्नामेंट हो रहा है।

कुछ फ्लैग लगाए गए हैं।

सामने कुछ लोग खड़े हैं टिकट ले रहे हैं।

एक लाल रंग का डस्टबिन रखा हुआ है।

कौन सा ट्रेन कहाँ और कैसे जाते हैं वगैरा।

ये एक सुनसान सड़क है।

सड़क पे पूरा पानी पानी--

पर्दे का रंग लाल है।

कुछ कपड़े डाले हुए हैं।

तीन चार बाइक लगी हुई है।

एक बड़ा सा पेड़ है।

कुछ लाइटें जल रही हैं।

गॉड की मूर्ति है इन्हें माला पहनाया गया है।

पीछे एक स्विच बटन --

चारों ओर बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ है।

खिड़की का रंग नीला है।

एक छोटा सा कमरा है।

ये एक प्राइमरी स्कूल हैं।

मछली के कार्टून रखे हुए हैं।

सबके कपड़े का रंग भगवा रंग है।

कुछ बलून्स लगाए गए है।

यहां पे फ्रिज टी_वी वगैरा मिलते है।

एक टी_वी चल रहा है।

छोटा सा दुकान या रेस्टोरेंट है।

इसके अंदर बहोत सारी मिठाई मिलती है।

आइसक्रीम पेप्सी मिलते हैं यहां पे बहो सारे बलूंस लगाए गए हैं।

यह एक नाई की दुकान है।

एक बड़ा सा चाय पत्ती का बागान है।

एक बड़ा सा मंदिर है।

उसके दीवार पर लाइट्स लगाए गए हैं।

बाहर पे फूल लगाए गए हैं।

हनुमान जी के मंदिर के ऊपर एक फ्लैग लगाया गया है।

यहां पे सीमेंटे का छोटा छोटा खंबा रखा हुआ है जिसमें कुछ डिजाइंस की गई हैं।

हरे हरे पपीते के पेड़ हैं।

बहुत सारे घास उगे हैं।

लकड़ी काटा हुआ रखा हुआ है।

आस पास में कुछ बैलून लगाए गए हैं।

इसके आसपास बहोत सारे जंगली पेड़ उगे हुए हैं।

असैली के पेड़ भी उगे हुए हैं।

ये एक मिठाई की दुकान है।

बाहर में बहोत सारे टेबुल लगाएं गये है।

एक लड़की डांस कर रही है।

कुछ चेयर रखे हुए हैं।

टेबुले भी रखी गई है।

एक छोटा सा कमरा है।

इसमें बहुत सारी लाइटें लगाई गई हैं।

एल_ई_डी भी लगा हुआ है।